लडडू भी है मिठाई भी है एक लड़ लेडीज है जो ब्लैक का कपड़ा पहनी हुई है।

बहुत सारे मेला भी लगा हुआ है एक ईख भी है।

बहोत सारे लोग भी हैं खंभा भी हैं।

एक पोस्टर भी टंगा हुआ है।

बच्चा लोग खेल रहा है एक लेडिस है जो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है।

यह देखिए एक किताब का दुकान है किताब के दुकान के अंदर बहोत सारे कॉन्टर भी बना हुआ है रैक भी बना हुआ है।

एक जेंस है जो वाइट कलर का ढो धोती पहना हुआ है एक लेडिस है जो पीला कलर के कपड़ा पहनी हुई है।

ये देखिए बहुत बड़ा कठरा रखा हुआ है।

ऐ देखिए ये एक बैग का दुकान है।

बहोत सारे लकड़ी का चेयर भी लगा हुआ है।

अच्छी चावल का बोरा भी है एक बाइक भी लगा हुआ है बहोत सारे चेयर भी रख--

रूम के अंदर बहोत सारे लोग हैं।